फिर भी मुझे बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पर इस फोटो के अंदर देख पा रहा हूं कि यहां पे मुझको बहोत सारी साइकिले दिखाई दे रही है।

बहोत अच्छी सानदार सानदार छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े बच्चों यहां पे की साइकल पड़ी हुई है और इनमे कुछ बड़े बड़े लड़कियो की भी लड़को की भी है।

जहाँ बहुत सारा मुझे समान रसगुल्ले मिठाई बर्फ़ी बहुत सारा समान--

ये मुझे बहुत अच्छा शानदार सा फोटो दिखाई दे रहा है वहाँ पर मैं इस फोटो के अंदर देख रहा हूँ कि--

किसी दुकान या शौरूम का फोटो जहां पे बेड के गद्दे मिल रहे हैं।

यहां पे बहोत अच्छी साफ सफाई भी हो रखी है दुकान पे--

इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है जिसने अपने हाथ में फूल ले रखा है और यहां पे--

ये एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं इस चित्र में देख पा रहा हूँ कि--

ये मुझे बहुत अच्छा फोटो दिखाई दे रहा हैयहाँ पे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो।

विवेक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं फोटो के अंदर देख पा रहा हूँ।

जहां पे कुत्तों के कुत्तों का फोटो जाहि लगता है कुत्ते के यहां पे खाने को कुछ यहां पे चीज वैगैरह है यहां पे डॉग्स के लिए दवाईयां मिलती होगी डॉग्स की यहां पे मिलती होगी।

बहुत अच्छा शान दार बना यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी करी मिस्त्री ने।

के मकसद पर बात करें यहाँ पे एक लेडीज भी बैठी हुई है यहाँ पे।

ये कोई फोरसीट वाले के नाम से ये एक प्रॉपर खाना खाने के लिए ढाबा हैजहाँ पे दो लोग यहाँ पड़ा हुआ यहाँ पे।

आगे कौन से टैंक नीले रंग का बानियान पहना है मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की सड़क के ऊपर यहाँ पे चल रही है।

ये भी मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं फोटो के अंदर देख पा रहा हूँ कि ये किसी बस स्टैंड स्टैंड का फोटो हैजहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी हुई है।

और यहाँ पे मोटरसाइकल गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पे एक्टिवा को लेकर जा रहा है।

ये भी मुझे बहुत अच्छा अंडा फोटो दिखाई दे रहा हैजहाँ पे।

जहाँ से आप घी पनीर रसगुल्ला कुछ भी सामान ले सकते हो।

यहां पे नीचे सफ़ेद रंग की और लाल रंग की मुझे टाइल्स भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर लाइट बहुत अच्छा शानदार फोटो मुझे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे।

कागजों के ऊपर रखे हुए हैंकबार के टुकड़ों के ऊपर रखे हुए बहुत अच्छे ।

यहां पे एक बहुत बड़ा मुझे पिंजरा दिखाई दे रहा यहां पे बहुत सारे कुत्ते हैं और यहां पे बहुत यहां पे मुझ को अह जो डॉग दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि डॉग पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं।

और ये बिजली का अपने आप में--

यहाँ पे मुझको नीले रंग का बहुत सारा बड़ा कपड़ा भी दिखाई दे रहा हैजहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे सब कुछ एकदम बहुत बड़ा लग रहा हैघूमने के लिए आए होंगे यहाँ पे तो--

और जहाँ पर मैं इस क्षेत्र के अंदर देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ हैं।

यहाँ पे मुझे बहुत ही सब कुछ एक यहाँ पे मंच मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मंच के अंदर यहाँ पे एक व्यक्ति।

यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाया होगा कुछ व्यक्ति बजा रहा है पियानो बजा रहा है एक व्यक्ति माइक में खड़ा हो कर गाने भी गा रहा।

और यहां पे होटल बहोत अच्छा होटल यहां पे कुछ और व्यक्ति भी खड़े हैं रात का फोटो लिया गया है यहां पर ये--

मुझे देखने को मिला था यहाँ पे रूम भी रोम भी शायद बुक मिलते हैं।

यहाँ पे रेल करंट बहोत है

ये वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और जहाँ पे मैं इस फोटो के अंदर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हरखारी के नाम से एक बहुत बड़ी मुझको शॉप दुकान दिखाई दे रही है।

बीच में यहाँ पे कांच के सीसे भी लगे हुए और ये दुकान लाल रंग की।

यहाँ पे मुझे बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

आसमान में नीला नीला आसमान हो रखा है यहां पर बहोत बड़ा यहां पर फील्ड है जहां पे हुई है अभी मुझे को एक बहोत बड़ी शानदार सी गाड़ी--

जहाँ पे मुझे बहुत सारे गांव वहाँ का दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बेल भी है।